ह सूरज के साथ सनसेट वाला फोटो खिचाते हुए सूरज उदय होते हुए सूरज अस्त होता है न तो फोटो खींचते हुए--

तालाब में भी साफ़ पानी दिखाई दे रहै है दूर -दूर तक --

उधर नीला काले रंग का थोड़ा वो भी बना हुआ हैं उनके दौड़ने के लिए वो देखो फुटबॉल भी रखाया हुआ है पीला-पीला रंग का कपड़ा पेहने हुए लड़के--

लड़के लोग फोटो खींच के भेज दिए दिख कैसे रहै फोटो खींच ना खींचे सकल ना सूरत --

वह दो झने कुत्ते दिख रहै है तीन झने आदमी दिख रहै हैं दिखने के लिए लेकिन खेलने वाले बच्चे नहीं है ये लोग--

और ये गोदाम हैँ किसी चीज का और गोदाम मे समान भी रखाया हुआ हैं बोरी-बोरी मे होगा कुछ उसके अंदर--

पर्दा लगा दिए है आजु-बाजु मे पर्दा क्यों लगवाए है भई तीन ठने स्तम्भ टाइप का बनाए हैं द्वार को भी--